सोप में मुझे अलमारियां बनी हुई दिख रही है और कई सारी दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही है और एक पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

और कई सारा मैदान बड़ा दिख रहा है चित्र में मुझे फार्म हाउस टाइप बना हुआ दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा हैं मुझे एक पैलेस दिखाई दे रहा है।

दुकान का नाम मॉडेन एंड चिकन सेंटर दिख रहा है।

और टी शर्ट और पैंट पहना दिख रहा है चित्र में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे एक हॉल सा दिख रहा हैं और अंदर एक रूम दिख रहा हैं।